चलाते हुए कुछ व्यक्ति महिलायें दिखाई दे रहे है और वे सभी--

लड़के खड़े होकर फोटो खिचवा रहे है।

पानी का बहाव भी तेज है नदी के किनारे।

सिनेमा हॉल का है और ये दृश्य एक सिनेमा हॉल के वहां का है जहाँ सिनेमा हॉल --